छोडून में अभी तक कोई उम्म ठीक करने वाले व्यक्ति नहीं आये हैं।

और बिजली उत्पन्न होती है।

यहां अनेकों प्रकार की साइकल रखी हुई है।

यहाँ कुछ गंदे दिखाई दे रही है यहाँ स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रतिमा जो सजी हुई है वो गोल्डेन कलर से है।

और कुछ व्यक्ति रोड पे जा रहे हैं कुछ व्यक्ति रोड से आ रहे हैं साइड में टेम्पु लगी हुई है और --

लेकिन व्यक्ति अंदर में हैं।

पंडाल में लाइटें जल रही हैं।